यहां पर एक बस खड़ी है।

यहां पर कुछ कागज के बने हुए सामान रखे हैं नीले रंग के कपड़े पर--

कुर्सी पर बैठे हैं छोटे छोटे--

लाल हरे सफेद रंग के है।